एक बड़ी सी जगह दिखाई दे रही है जहाँ पर चट्टान से वहाँ पर कुछ बनाया गया है और वहाँ पर एक संख रखा हुवा है वाइट कलर का और --

ऑरेंज कलर से रंगा हुआ है कुछ कार वार दिखाई दे रहे है एक वाइट कलर की है दूसरी ग्रे कलर की है कुछ पाइप्स दिखाई दे रहे है और हरे-हरे पेड़ दिखाई दे रहे है।

बिल्डिंग दिखाई दे रही है जो व्हाइट कलर से रंगी हुई है ब्राउन कलर से रंगी हुई है वहाँ पर कुछ काँच-काँच लगा हुआ है जो ब्लू कलर से रंगा हुआ है थम्ब दिखाई दे रहे है जो ब्लू कलर से रंगे हुए है।

यहाँ पर एक रेल्वे स्टेशन दिखाई दे रहा है जहाँ पर वूट्स ट्रेन दिखाई दे रही है और कुछ इलैक्ट्रिकल के जो तार है वो दिखाई दे रहे है बुल्स नज़र आ रहे है यहाँ पर कुछ ट्रक्स नज़र आ रहे है।